हां एक मैट बिछा हुआ है पीछे पानी की टंकी स्टूल --

ओरियो बिस्किट ब्रेड क्रीम रोल --

ये एक शादी की फोटो है जिस इस फोटो में स्टेज पर दूल्हा खड़ा है और दूल्हे के हाथ में --

ये एक इंस्टिट्यूट की फोटो है जिसमें बहुत सारे --

बिल्डिंग चमक रही है और बिल्डिंग के एक कॉर्नर --

कई सारे लोग यहां पर पार्टी करने आए हुए हैं और यहां इसमें पीछे खाने का सामान भी रखा हुआ है जो कई सारे लोग यहां पर खाना एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाए गए हैं।

ये फोटो सोसाइटी के बाहर बने--

ये एक स्कूल के क्लासरूम की फोटो है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और सब बच्चे अपनी-अपने--

ये एक रोड की फोटो है जिसमें कई सारी गाड़ियां आ और जा रही हैं सामने एक बिल्डिंग भी है जो और एक बड़े से पेड़ को दिखाया गया है साथ में ये--

ये एक गार्डन या पार्क की फोटो है जिसमें पे बहुत सारे पेड़-पौधे को दिखाया गया है आपस में यहां पे पेड़-पौधे की हरियाली व सुंदर--

इस फोटो में हम अपने राष्ट्रीय स्मारक को बखूबी देख सकते हैं जो कि काफी ऊंचा लंबा है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है साथ में यहां पे --

यहां पे लैंप भी दिखाए गए हैं और यहां पे कई सारे प्रोडक्ट रखे गए हैं जो --

ये एक स्टेशनरी की फोटो है जहां पे स्कूल की जरूरतों का सारा सामान दिखाया गया है जैसे कि कॉपी पेन मार्कर टेप --